देखो ये रेलवे स्टेशन है प्लैटफ्रोम नंबर वन है मूसा फरलो--

देखो ये रेलवे स्टेशन है यहाँ बहुत सारे कुत्ते सो रहे है चार कुत्ते है पीछे पेड़ है मुसाफिर दिखाई न दे रहे है।

इसके अगल बगल मे कुछ भी न है कोई कंपाउंड वॉल है उसके अंदर ये मंदिर दिख रहा है पूरे व्हाइट रंग का हैये ।

बाद मे पता चलेगा कि बाबा के भी सजा देते है।

जैसे साड़ी है लेगिस है कुर्ती है ये सब यहां दिखाई दे रहा हैऔर कम रेट मे मिल रहा है।

माता रानी कितने अच्छे दीखते है अच्छे से माता जी को तैयार कर दिया है अगल बगल में जो भी माता रानी के पिक है वो भी बहुत बढ़िया है।

कितना सुंदर महावीर भगवान का ये मंदिर है भगवान का मन मूर्ति मीडिया साइज में मंदिर में रखा है सब लोग यहां दर्शन के लिए आते हैं।

यह एक कारखाना जैसा है यह मजदूर लोग कम कर रहे हे सभी लोग और एक मजदूर हे वो आग को बुजाने का कोशिष कर रहा है और दूसरे लोग भी यहा कम कर रहे है।

लोग यहाँ आते है और जाते है।

पेड बहुत सारा है इधर में जैसे यहाँ पर्पल कलर का कोई चादर बीछा के रखा है बहुत अच्छा सीन है।

देखो ये शुभम ड्राइ फ्रूट्स जनरल स्टोर है यहां ड्राइ फ्रूट्स मिलते है लोगों को जो चाहिए वो इधर से आके ले जाते है दाम भी कम है।

सारे जात के अनाज मिल रहे हैं सारी चीज यहां अवेलेबल है।

सब पुराना चीज हैयहाँ पे कुछ नया तो दिखता ही नही है पुराना बिल्डिंग है।